यह एक अस्तपताल है इस अस्तपताल में बहूत सारे व्यक्ति आये हुए हैं जहां पर --

आते है लोग और अपने शादी समारोह को अच्छे से आयोजित करते है इस भवन का किराया करीबन --

यह एक बड़ा सा मैंदान है। मैंदान में एक कार्यकर्म का आयोजन होने वाला है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कुछ सदस्य आये हैं।

द्वारपाल की मूर्ति लगी हुई ह। यह भवन का प्रवेश द्वार काफी देखने में खूबसूरत है और ये तमाम प्रकार के कपड़ो और फूलो से सजाया गया है।